और ये पाइप बहुत ही ज्यादा अच्छी है।

येह बहोत ही सुंदर सा पहाड़ है जिसके इर्त गिर्त बहोत सारे पेड़-पौधे है यह एक पिकनीक प्लेस है यहाँ पे आपको बहोत ही ज्यादा अच्छा और मज़ा आएगा साथ यहाँ --

ये एक घना जंगल है पर यह पे बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और आपको यह जगह में पिकनिक मनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और बहुत ही--

यह एक बहोत ही बड़ा मॉल है जहां बहोत से लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए आते हैं यहां पे आपको हर एक समान मिल जाएगा और आपको अच्छा--

यह एक योगा क्लास है जहाॅं लोग अपनी फिटनेस और अपने आप को स्ट्रॉंग बनाने के लिए ही आते हैं यहाॅं पर सब बहोत ही खुशी से योगा करते--

यहां एक सैलून है जहां पर आपकी दाढ़ी बाल ऐसी चीजे काटी जाती हैं आपको इस जगह में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा।